पानी के अंदर नहा रहे हैं ऊपर से पानी गिर रहा है।

और चॉकलेट रखे हुए हैं नीचे में बहोत सारे दुकान के अंदर में और केक रखे हुए हैं।

एक ट्रोली दिखाई दे रही है जिसमें प्याज़ खीरा रखा हुआ है और टमाटर दिखाई दे रहा है।

उसके पंजे पीले कलर के हैं आसपास में घासे दिखाई दे रही हैं नीचे में पानी दिखाई दे रहा है।

दो बाइक दिखाई दे रही है आसपास में पेड़ लगे हुए हैं।

इस चित्र में पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

और बैठने के लिए बाहर में लगे हुए हैं और पीछे साइड में तरकुल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और एक स्कूटी दिखाई दे रही है तीन चार साइकिल दिखाई दे रहे हैं।

पर्दे लगे हुए हैं व्हाइट कलर के और स्पीकर रखा हुआ है बड़ा सा थोड़ा।

चित्र में एक व्यक्ति बैठा हुआ है यू_पी_आई कोड दिखाई दे रहा है।

और व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं गमले वमले नीचे में रखे हुए हैं सोफा रखे हुए हैं और टेबल है ए_सी है।

प्याज के बोरे दिखाई दे रहे हैं लहसुन के बोरे दिखाई दे रहे हैं एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक बस दिखाई दे रहा है इस चित्र में ये घर मस्जिद जैसा लग रहा है।

इसके पीछे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और कुर्सियांये दिखाई दे रही हैं और टेंट ओन दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा होटल दिखाई दे रहा है।

मिठाई है स्प्राइट का एक बोतल दिखाई दे रहा है टेबल है।

जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं और खड़े हैं।

और ग्गं दरवाजे से पीछे साइड में एक वॉटर पोल जैसा दिखाई दे रहा है और ए एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है।

चित्र में एक पिंक कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है य पतंजली टेस्टी नमकीन ढाबा।

बाहर में समाने दिखाई दे रहे हैं ये बाइक स्कूटी दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर का शील्ड का कलर ब्राउन और ब्लैक है कछुए का मुंह दिखाई दे रहा है कछुए के दो पैर दिखाई दे रहे --

चित्र में दो लोग दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में चप्पल दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में योगा करते हुए महिलाएं दिखाई दे रही हैं ऊपर में पंखा दिखाई दे रहा है।

तीन सबसे बड़े डब्बे दिखाई दे रहे हैं ब्लू व्हाइट पिंक और एक एल_इ_डी बलफ दिखाई दे रही है।

व्हाइट कलर की पंनियाँ हैं। ग्रीन कलर की रस्सी से बंधी हुई है।